यहां पर एक स्टेच्यु बना हुआ है जो मछली है आधा और आधा इन्सान के रूप में है और यह जल परी जैसा बना हुआ है जो ग्रे ब्लैक मिक्सिंग कलर है।

यहां पर एक मूर्ति है जिस पे चुंदरी वगेरा डाला है और फुल के माले भी डाले हुए है यह किसी चीज पर बैठी है जो बहुत ही डिजाइनर बनी हुई है वाणी है हंस है वगेरा कुछ भी है ।

यहां पर एक मूर्ति है जो बहुत ही फूलो से सजाया गया है बाल वाल लगा हुआ है पीछे में फुल जैसा कुछ गुलाबी जैसा है ।

नीचे में छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे घासे है यहाँ पर पत्ते भी सूखे हुए है जो गिरे हुए है जो बहुत प्यारे लग --

निचे में गदा बिछाया है जो पर्पल नजर आ रहा है और यहाँ पर ब्लू कलर का कपड़ा भी रखा हुआ है लकड़ी की अलमारी है अलमारी में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं और यहाँ पर कोई दुसरा इंसान नही --